लोगो ने यहां पे यहां पे लड़के है लड़के ने व्हाइट कलर का शर्ट लोअर पहना हैऔर यहां पे एक लेडिस भी है उन्होंने येलो कलर की साड़ी पहनी है।

वॉचमैन कि ड्रेस का कॉलर ब्लू है उसने एक बन्दूक लि हुई है और लोग काफी देर से खड़े है लाइंस पे लाइन लगाए।

एक आदमी यँहा पे सेल कर रहे है एक चेयर दिख रही है रेड कलर की दिन का टाइम है और काफी सारे पौधें है।

लाइट व्हाइट कॉलर की येलो कॉलर का प्रिंट है यहां पे भईया ने शूज पहने है जींस पहना शर्ट पहना है शर्ट का कॉलर ब्लैक है जीन्स का कॉलर ब्लू है।

ये एक मंदिर हैमंदिर व्हाइट कलर का है यहां पे पेंटिंग व्हाइट कलर की हुई हैएक गेट दिख रहा लोहे का जिसमे काफ़ी ज्यादा डिजाइन है डिजाइन व्हाइट एण्ड येलो ह कॉलर की है।

काफी सारे लोग भी है और यहां पे आजू-बाजू पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं और मॉर्निंग का टाइम है।